और पैसा निकाल कर आते है फिर कुछ लेने के लिए जाते है कई कार्य करते है जो मनोहर होते है।